हम देख सकते है इनके टेबल पर कई सारे पेपर वगैरह मौजूद है और चेयर लगाए गये हैं और मशीने है।

और इससे हमें ताकत मिलती है और दूध से कई चीजे बन जाती है हम देख सकते है यहाँ ड्र-ड्रम है पानी के लिए।

इस चित्र में हम देख सकते हैं की यहाँ पर मस्जिद है जो की अ जामिया मस्जिद भी कहलाती है बहुत बड़ी जामिया मस्जिद होती है यहाँ पर कई सारे --

चित्र मे हम देख सकते हैं कि ये एक मस्जिद है जहाँ पर कई सारे लोग बैठकर नमाज़ पड़ते दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं की बड़ी खूबसूरती से इधर सजावट की गई है शामियाना डाला गया है मानो यहाँ पर किसी की हल्दी हो रही हो।

इस चित्र में हम देख सकते हैं की यहाँ पर बहोत प्यारा सा अ-मो महल है हॉल है जहाँ पर बड़ी खुबसुरती से बहोत प्यारी-प्यारी सजावट की गयी है।

इस चित्र मे हम देख सकते हैं की यहाँ पर बहोत बड़ा शामियाना बिछाया गया है और अ स-सभी लाइटे मौजूद दिखाई दे रही है बहोत ही खूबसूरत सा नज़ारा है।

बैंगनी रंग के परदे और सफेद पर्दो से यहाँ पर शामियाना लगाया गया है और बड़ा ही आ प्यारा सा मैदान नजर आ रहा है लाल और हरी कारपेट बिछाई गई है और गुबारों से सजाया --